एक लड़का है ग्रीन कलर का शर्ट पहना है ।

चेयर है चेयर का कलर ब्लैक है।

एक आदमी है वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है ।

जेरोक्स मशीन है कलर ब्लैक है डायरी है डायरी का कलर ऑरेंज है स्विच बोर्ड है।